पीले कलर का कुछ ढ़के हुए है अपने शरीर --

एंड डाॅक्टर सतीश कुमार का नाम है ये है का --

और दिखाई अभी छोटा-छोटा दे रहा है बहुत उच्चे से वो दि --